और यह समुंदर बहुत गहरा और बहुत लंबा है बहुत दूर तक दिखता है ।

उसके बाजू में चल के आ रहा एक बंदा वो जिसके हाथ में फोन है वो फोन पे बात कर रहा है ऊपर बिल्डिंग बन रहा है।

यह एक पिक्चर है इसमें ब्लर हो गया है आजू बाजू कहीं में उसमें एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

और घर बन रहा है तो बनेगा ही और उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे एक बंदा--

बहुत सारा समान बेंच रहे हैं बहुत सारी वस्तुएं हैं ।

आसमान खुला है जमीन खुली है बहुत सारे वायर्स है विरा लोकल है--